उधर देखने में लड़की को छेड़ ने जाते-जाते वरमाला में क्या लड़का- लड़की का शादी हो रहा है वो करे।

क्या सोच रहे हो भाई दुकान खोल के बैठे हो ग्राहक नहीं आए चिंता खाए जा रही है।

नहीं बता पा रहे हो कुछ तो बोलो सोचते क्या --

ये भी ए .टी .एम. में जा रहे है पैसा निकालने देखना अपना भूल ना जाए कोड अपना भूल ना जाए बता देना गार्ड साहेब।

फ्लोर डीजे बजा ये लोगो के लिए इतना छोटा स्टेज पे डांस करेगी बच्चा लोग।

समंदर मे चल रहे हो नाव देखो आगे किधर जाएगा उधर से सामने से कोई आएगा टक्कर मार देगा उलट जाओगे भाई।